लड़के के हाथ में एक बाल्टी है तथा एक व्यक्ति सेल फोन पर बात कर रहा उसके हाथ में ब्रश --

यह एक सेंटर है जहाँ बहुत सारी औरतें व एक व्यक्ति चेयर पर बैठा हुआ है।

अ एक स्कूल है जहाँ बहुत सारे बच्चे प्रैक्टिकल कर रहे हैं।

यह एक कोचिंग सेंटर है जहाँ चेयर पे बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हुए है जिन्होंने मुँह पे मास्क लगाया हुआ है बुक और पेन है।

तथा नीचे एक पन्नी बिछी हुई है एक पटियाँ लगा हुआ है जिस के ऊपर एक आदमी खड़ा है इस के ऊपर एक बोरा है पीछे से एक आदमी आ --

तथा एक पेर के ऊपर दूसरा पैर रखा पीछे गेट लगा हुवा है।